यहा हमिल मन होटल क रूप में जई के वहा रही सकील।

पिज्जा फोटो खरेदे के लिए हमर आदमी मन जाए ला--

अपन ड्रेस अपन पहचान बनाई के रखे--